जिस पे एक बच्चा झूलता हुआ भी दिख रहा है जिसमें जींस और हल्की सी ग्रीन कलर की शर्ट पहन रखी है।

बहुत सारी मशीने रखी हुई है दो आदमी दिखाई पड़ रहे हैं ऊपर कि तरफ़ कुछ विंडोज दिखाई पड़ रही है।

नीचे की तरफ काफी सारा पानी भरा हुआ है छोटे छोटे पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं।

और यहां पे कुछ शकरकंद है यहां पे एक तोरइ दिखाई पड़ रही है बैंगन दिखाई पड़ रहा है भिंडी दिखाई पड़ रही है।

ये एक क्रेन है जिसमें पीछे की तरफ से एक कांटा दिखाई पड़ रहा है एक वाइट कलर की फोर व्हीलर खड़ी हुई है जिसको लटकाया हुआ लेता हुआ जा रहा है एक रोड दिखाई पड़ रही है आस पास।